यह एक वॉटर पार्क का नज़ारा दिखाई दे रहा है।

यहां पर पूजा लगाई गई है।

नीले रंग का स्विमिंग पूल दिखाई दे रहा है।